है और उसके अगल-बगल में कई झाड़ियां उगी हुई हैं।

स्कूल का नाम है अ रास्त्रा भारतीय पब्लिक स्कूल वहाँ बच्चे --

यह दृश्य एक मंदिर की है जिसमे मूर्तियां तीन मूर्तियां रखी हुई हैं ।

यहाँ सामने एक दल-दल वाले पानी जमी हुई है ।

चट्टानें की रंग काली प्रतीत होता हैऔर झाड़िया हरी-हरी है।

और कई मशीने रखी हुई है जो आ जो देखने में एक गैरेज जैसे ही लग रही है ।

और यहाँ स्टेज एक स्टेज बना हुआ है जिसमें तीन चौकियां है लकड़ी की बन के रखी हुई है।

यहाँ एक अ करकट शीट की घर बनी हुई है जिसमें सृजल लिखी हुई है ए और यहाँ दो दुवारें बनी हुई है।

स्टार उम्म के अंदर यीशु जी दिखाई दे रहे है और यह शीशे की बनी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है यहाँ पर किनारे बहुत बड़े-बड़े मकाने बने हुए है ।

वहां सामने एक एस.बी.आई. की ब्रांच खुली हुई है एस.बी.आई. ब्रांच में कई लोग आना-जाना कर रहें हैं।

और इसमें बोहोत बड़ी इमारतें हैं। इसमें बाहर में स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है।

और लोग वह आना जाना कर रहे हैं ।